उपयोगी जगह है जहां पर इंजनों का आवाहन होता है और उन्हें रिपेयर भी किया जाता है।

तो जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ये एक सड़क के बीचो-बीच साड़ी गाड़ियां यहां पे आ जा रही है ऑटो का।

सारी सावधानिया बरतनी चाहीये क्या करना चाहीये ये बोर्ड पे लिखा हुआ है।

का काम अभी शुरू हुआ है।

अभी जस्ट थोड़ा सा नीचे का हुआ है और पूरा अभी बाकी है यहां पर सीमेंट और कुछ ईंट रखी हुई है जिसे अभी काम लगातार शुरू --

मार्के अ शांतता और मार्केट प्लेस है जहा बड़े बड़े बैंक ऑफिस और वे वर्कर मतलब के बड़े बड़े --

हेयर स्टूडियो जहां पे बाल काटे जाते हैं जहां पे --

तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस तस्वीर में इस तस्वीर में एसबीआई ना --

बैंक के सा ए_टी_एम के सामने एक कार खड़ी हुई है और एक छोटा सा घर है।

इतना इंतिजार सारे बिहारीयन बिहारी करते है और भी बहुत लोग करते है छठ पूजा में बहुत ही आनंद आता है छठ पूजा बेटो के लिए किया जाता है और छठ पूजा का--

बतक अपना खाना ढूंढ रहा है और पत्ते खा रहा है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है एक कुए के बीचोंबीच ।

किस डिसेंबर सांताक्लॉस बनाया जा रहा है क्रिसस्मस जहापर बिच में अ मेरी क्रिसस्मस खड़े है और अगल बगल बच्चे --

ऑटो को क्रम से लाइन से भेज रहे हैं जैसे कि ट्रैफिक --

उसके पास में कई सारी स्कूटियां खड़ी हुई है और स्कूटी है और ये बैंक --

और हवा चल रही है और आकाश का रंग भी काफी सुनहरा हुआ रखा है जिसे देख के --

तो जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं इस तस्वीर में रात के अंधेरे के --

वाव सो एमॅजिक --

पर्स टंगे हुए है जेकेट टंगे हुए है अलग अलग टाइप के सारे कपड़े महिला के टंगे हुए है जो देखने में बहुत ही रंग फूल लग रहा है।

तो जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं इस तस्वीर में पतंजलि स्वयम दवा मेडिसिन बट रही है यहां पे आंटिया दवा ले रही है।